गाड़ी लगा हुआ है स्कूटर भी लगा हुआ है।

यहाँ दो गो स्कूटी और मोटरसाइकिल है बहुत सारा और यहाँ कुछ बैंक है।

यहाँ दो अंकल जी खडा है। बगल मैं कुछ गुमटी है। उसके बगल मैं भी एक गुमटी और एक यूनिक बै-बैंक है बगल मैं --

बहुत बड़ा स्टैम्प ऑल बैंक है कुछ भी है ए.टी.एम. भी है। यहाँ गाड़ी तीन गो लगल है दुगो गाड़ी है एगो कार है।

अगर यह पहाड़ टूट कर गिर गया तो अंकल जी का क्या होगा? डर भी नहीं लग रहा है अंकल जी को | नीचा से सुरंग--

अंकल जी का पीछे एक लड़का खड़ा है वो भी अच्छा लग रहा है।

और एक बच्चा लेले है गोदी में एक ब्लू कलर का पेहेनले है| नीचा में चप्पल जूता पेहेन--

यहाँ पर बहुत सारा आदमी है सामने बोल-टाल लगा हुआ है ऊपर मे एक पेड़ है पेड़ का नहीं पता कौनसा पेड़ है लेकिन यहाँ अंकल जी ओ उजला पेहेनले के काला जीन्स पेहेनले --

यहाँ पर कोई लड़की बात कर रहा है कोई मोबाईल देख रहा है| यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है| यहाँ बड़ा-बड़ा बिल्डिंग सब एक सुरंग है जाने वाला |

कुछ शक्तिमान का फोटो चिपका हुआ है वहाँ पर कैंची रखा हुआ है बगल में डिब्बा रखा हुआ है दवाई सब बहुत ज्यादा रखा हुआ है।

बहुत सारा लेडिज है यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है| नीचा में नीचा में बैठा हुआ है| एक बच्चा बैठा हुआ है नीचा में।

यहाँ पर कुछ प्रचार चल रहा है कुछ का यहाँ बिल्डिंग है कुछ पा टा कुछ पेड़ है।

गुलाबी बैग है कुर्सी लाल कलर का कुर्सी है बैलून पीला कलर का और लाल कलर का काला कलर का बैलून है| यहाँ कुर्सी सब बहुत ज्यादा लगा हुआ है| यहाँ कुछ एक आदमी के हाथ में मो--